यह एक डॉक्टर है जो एक मरीज को इंजेक्शन दे रहा है।

इसके घर में बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं बहुत सारी चीजें--

यह झरना बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है।

यह एक पार्क है जो की बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं।

और भी तरह की तरह के भगवान का मूर्ति है जो हिंदू धर्म के प्रतीक माना जाता है यह हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ --

यह रोड है जो बहुत ही बड़ा रोड है इसके बगल में एक स्कूल है।

स्कूल या घर बोल सक घर है स्कूल नहीं है सॉरी और यह घर बहुत ही बड़ा है।

यह कपड़े सस्ते होंगे महंगे होंगे अलग-अलग तरह के कपड़े होंगे इसमें --

यह एक मंदिर है जिसके चारों ओर एक बहुत ही सुंदर सा सास्टेडियम बना हुआ है।

यह अपने डांस में मगन है जो बहोत अच्छी तरीके से डांस कर रहे है।

एक स्टेज पर डांस कर रहे हैं।

और घूमते है सभी के अपने फैमिली के साथ आते है और अ पेट भरते है कुछ खाने का चीज हो तो खाता है बोहोत चीज करते हैं।

कहीं पर घूमने के लिए गए हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा सा फोटो खिंचाया गया है जिसके जिसके कुछ स्तम्भ बने हुए हैं जिसके ऊपर से पानी गिर रहा है।

यह रेल्वे स्टेशन है इस पर तीन पटरिया है जिस पर ट्रेन आते हैं।

जो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ त्योहार बनाया जा रहा है किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है।

यह दुकान में सभी समान बिखरे पड़े है यह दुकानों को अभी बनाया जा रहा है।

यहाँ एक लॉयन है जंगल का राजा शेर कहाँ जाता है।

यह एक शेर है जिसकी मूर्ति करी गई है।

यह बच्चे आगे चलके बहोत कुछ करेंगे अपने भविष्य को सुधारेंगे--